हैं उसके पीछे एक किला बना हुआ है।

व्यवस्थित रूप से खड़ी की गई है और उसका गेट बहोत बड़ा है।

पौधा उगाया हुआ है और साइड दीवार पे ग्रीन कलर का फर्श लगाया हुआ है और उसके ऊपर--

पॉलिथीन से पैक किया गया है जिससे--

आगे खड़ी है जो बहुत अच्छी है और ग्राउंड के अंदर कुछ खंबे लगे हुए हैं खंबे के पास --

और साइड में एक दीवार लंबी खिंची हुई है दीवार का कलर व्हाइट है।

अधिक्षक बीकानेर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके पीछे एक बड़ा सारा --

बहुत सारी अलग अलग कब्र कार की रखी हुई है और एक लड़का सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा है।

बहुत लंबी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं सीढ़ियों के साइड में ब्लू कलर की रॅलिंग्स भी लगी हुई है।

पर्दे के जो कलर है वो अलग अलग प्रकार के कलर है और पर्दो को डिजाइन के अंदर लगाया गया हुआ दिखाई दे रहा है।

घर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है घर के आगे एक सड़क है सड़क के साइड में गाड़ी है।